यहां पर बीच में एक पिलर है उस पिलर के अगल बगल कुछ आदमी और औरत बैठे हुए हैं टेबल --

उसके अंदर में बजरंगबली को लाल कलर का--

अगर बगल में छोटी छोटी बहोत सारे भगवान की मूर्ति रखी गई है।

इमारत की कलर सफेद रंग से रंगी हुई है।

इस इमेज में एक सर्विस सेंटर को दिखाया गया है।

यहां पर एक आदमी हीरो कंपनी की बाइक को सर्विस कर रहा है।

यहां पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे लगे गए हैं।

जो की उसके अंदर कुछ प्रोग्राम चल रही है।

हवा में लटकाया गया है नीचे भी कुछ बैठी गई है बच्ची।

और उसके बाहर में फाउंटेन लगाई गई है।

और उसपे अच्छे तरीके से लाइटिंग लगाई गई है फैन लटकी हुई है।

अनेक प्रकार के पेड़ भी है उसके ऊपर एक जो तिरपाल है वो ब्लू रंग से रंगा गया है।

इस इमेज में एक ज्वेलरी शॉप को दिखाया गया है जो --

बगल साइड में गहने देखने के लिए एक भी लगाया गया है।

और उस छत पर एक झालर लटकाई गई है।

उसके सामने की दीवार हल्के पिंक रंग से रंगी गई है।

यहां पर टेबल पर एक हेलमेट रखाया गया है।

उस रैक पर बहुत सारे टाइप की कोल्ड ड्रिंक रखी गई है।

और वाइट और हल्की सी लाल में आख्रिथि बनाकर वोडाफोन लिखा हुआ है।

इसके नीचे में दो आदमी खड़े होकर दुकान में कुछ सामान ले रहे हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी घूमने के लिए आए--

में साफ सपाट आकृतियां होती है पह--

छत पर एक पंखा लटकाया गया है।

एक मेज के ऊपर कॉफी बनाने की मशीन रखी गई है।

और यहां पर बैठने के लिए टेबल कुर्सी लगाया गया है।

इस इमेज में एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया गया है।

एक कार लगी हुई है और टेंपो है उसके बगल में एक पेड़ है।

यहां पर सिल्डर के अंदर जाने के लिए सीढ़ी लगाई गई है।

इस लाइब्रेरी में चौबीस घंटा बिजली की सेवा मिलती है।

नीचे में बैठने के लिए टेबुल टाइप की बनाई गई है।